तथा इस सोसायटी का गेट काले रंग का है।

मुझे इस फोटो पर एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है।

इस दुकान के बाहर एक टू व्हीलर गाड़ी भी खड़ी हुई है।

इस दुकान का नाम टॉपिन टाउन शॉप है।

इस गोदाम में अल्ट्राटेकस सीमेंट लिखा हुआ है।

मुझे इस फोटो पर एक बैंक का--

समुद्र के चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ भी स्थित है।

गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पर एक बहोत ही बड़ी--

मुझे इस फोटो पर एक--

इस प्लेटफ़ॉर्म के नीचे बहुत सारे पत्थरों के अलग अलग रैक भी बने हुए हैं।

बहोत ही बड़ा सा जंगल दिखाई दे रहा है।

वाशिंग सेंटर की दुकान नजर आ रही है।

जिसमें बीचो बीच एक बहोत सी बड़ी टेबल रखी हुई है।